दिखाई दे रही है जहां पर की बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है और यहां का हॉल में बहोत सारे--

जो कि पार्क में सैर कर रहे है और कुछ लोग यहां पर--

और बाहर बहोत ही ज्यादा ए_सी लगे हुए है।

और इसी के साथ कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं जोकि--

एक बहोत ही ब ज्यादा प रक्त जो कि पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसी के साथ एक बेन्चिक भी लगा हुआ है बेंच पर कुछ लोग बैठे हैं।

खड़े हैं और कुछ लोग शीशे में देख रहे हैं।

यहां पर सामने ही कुछ हॉस्पिटल की एक तस्वीर दिखाई दे रही है।

और कई पुजारी भी यहां पर खड़े हैं।

और इसके दूसरी साइड जहां से बच्चे उतर रहे हैं।

प्लेटे पड़ी हैं जिसमें की चावल और--

अ जो कि तार का एक टावर जा रहा है बहोत ही--

और उसी के साथ कुछ व्यक्ति यहाँ पर पानी दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं।

और सामने से कुछ दिखाई दे रहा है जो की अंदर की तरफ एक पार्क को आने के लिए एक गेट बनाया गया है जो की एक गोल गेट है।

और उसी के साथ एक बहुत ही बड़ा--

ये एक बहुत ही अच्छी यहां पर तस्वीर है जो कि एक पार्क की तस्वीर है।